ये एक इलाहाबाद बैंक है जो बंद है जिसका शटर लगा हुआ है बैंक के बाहर कुछ साइकिल खड़ी है एक अंक एक जेंट्स नीचे बैठा हुआ है यहाँ पे चार ए.सी. भी लगी हुई है।

आस-पास कुछ दुकाने भी दिखाई दे रही हैं यहां कुछ साइकिल्स और गाडियां भी खड़ी हुई है।

और है ना ये बिल्डिंग है ये है ना रेड वाइट ब्लैक कलर से पुती हुई --